और यहां पर जो कुर्सी लगाई गई है उन कुर्सियों का रंग सफेद रंग का है और स्टेज पर भी बहुत सारे लोग खड़े और बैठे हुए नजर आ रहे है।

यहां पर बहोत सारी किताबें भी रखी गई है और एक गेट लगा हुआ नजर आ रहा है जो कि ब्राउन रंग का है।

लाइटें लगाई जोकि बहोत ही प्यारी तरीके से नजर आ रही--

इस फोटो के अंदर एक जिम नज़र आ रहा है जिम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गयी है और जिम मे बहुत सारे इक्विपमेंट नजर आ रहे है।

इस फोटो के अंदर एक घर नजर आ रहा है घर के सामने एक छोटा सा गार्डन नजर आ रहा है जहां पर घास -फुश लगाई हुई है और बीच-बीच में कुछ --